मुझे यहाँ दो आदमी दिखाई दे रहे है जो अपनी सब्जी बेच रहे हुए पीछे एक घर सा भी बना हुआ है घर के सामन-बक्से भी रखे हुए साउंड और सब्जी में शिमला मिर्च टमाटर गाजर अ।

मुझे यहाँ पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है पहाड़ टाइप पे जे पत्थर भी बड़े बड़े रखे छोटे छोटे पत्थर भी काला काला सा दिखाई दे रहा है।